खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे लाइट है सुंदर सुंदर लाइट है दभोत सारी लगी हुई दिखाई दे यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई दे रहा जो सेल्फी लेता हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर जिम का बहुत सारा सामान दिखाई दे रहा है यहा पर जिम करते हुए आदमी भी दिखाई दे रहे हैं यहा पे लड़के सेल्फी भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं पीछे में भी--

-- सारी मछलियाँ दिखाई दे यहाँ पर टोकरी दिखाई दे टोकरी में बहुत सारी मछलियां दिखाई दे छोटी-छोटी मछलियां दिखाई दे यहा पर बहुत सारी आदमी दिखाई दे यहा पर पलवा दिखाई दे जिसमें से एक आदमी तोलता हुआ मछली दिखाई दे रहा है यहाँ पर।